लोगों के समान को ढो रहे हैं यहां पे--

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और मट्टी को देख रहे हैं।

सामने में दो लेडिज जा रही है एक के हाथ में सफेद कागज है और एक खाली हाथ जा रही है खाली हाथ --

यहां एक कार को सर्विस दिया जा रहा है यहां एक वर्कर --

यहां पे डेकोरेशन काफी अच्छा किया गया है।

इस बैंक के सामने एक आदमी झाड़ू लगा रहा है यह आदमी बहुत मेहनती लग रहा है।

पार्क किए गए हैं। यहां पर कुछ ब्रेकर भी रखे गए हैं और यहां कुछ आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं।